गेंदे की फूलो की लारियाँ उस पर लटक रही हैं पास में एक बिजली का खम्बा है जिस पर तार लटकते हुए नजर आ रहे हैं।

पर एक रास्ता बना हुआ है और एक बॉउन्ड्री बनी हुई है जोकी येलो कलर की पुती हुई है।

यहाँ पर एक मैदान दिख रहा है और उसके अंदर गाड़ियाँ जा रही हैं। सामने की तरफ एक मल्टी बनी हुई है और उसमें बहुत सारी खिड़कियाँ दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ से रास्ता दिख रहा है।

दिख रहा है। रोड के ऊपर एक येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है जो की खिड़कियां जिसमें नजर आ रही हैं और एक दरवाजा दिख रहा है जो की ब्लैक कलर का है।

ऊपर में कुछ टाइप लगे हुए दिखाई दे रहें हैं और एक साइकिल आती हुई नजर आ रही है। आसमान नजर आ रहा है। बिजली के तार दिख रहे हैं।

और एक बिल्डिंग दिख रही जिसके निचे की बॉर्डर ब्लैक कलर की है ऊपर व्हाइट कलर में खिड़कियां नेज़र आ रही हैं ऊपर में--

सामने में एक टी.वी. है और एक बलुन दिखाई दे रहा है और ल कैंडल लाइट्स वगेरा नजर आ रहीं हैं।

यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहे है जिसको चारों तरफ से ए बाउंड्री खींची हुई है। कुछ बच्चे जाते हुए नजर आ रहे हैं जो येलो और पिंक कलर के ड्रेस पहने हुए आसमान दिख रहा है तार नजर आ --

और उनकी विन्डोस दिखाई दे रही है। एक बिल्डिंग पर ग्रीन कलर की पुताई की हुई है और रानी कलर का आ शेड भी दिखाई दे रहा है।